ग्रीन येलो कलर की है रेड कलर की हेगी और यहां पर ब्लू है व्हाइट है ग्रीन कलर की बनी हुई हेगी और यहां का पानी नीला दिखाई दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है यहां पर देखने में।

पीपड़ लगे हुए हेंगे और यहां पर काफी अच्छा लग रहा है देखने मे और पेड़ों के पत्ते जमीन पर झड़ रहे हेंगे कुछ पत्ते फ्रंट साइड पर है और कुछ पत्ते रोड पर डले हुए हेंगे और यहां पे दीवार मे कुछ लिखा हुआ हैं।

और ये मशीन ऑरेंज कलर की है और ये आस-पास घर बने हुए है काफी कच्चे जमीन दिखाई दे रहे है पेड़-पौधें लगे हुए है यहां एक आदमी ऑरेंज कलर के शर्ट पहने हुए है और यहां पे एक कैम्प लगाए हुए व्हाइट कलर --

पेड़-पौधे लगे हुए हेंगी यहाँ एक बाइक जा रही है जिसपे दो लोग बैठे हुए हेंगे और यहाँ पे काफी देखने में अच्छा लगा और ये बिल्डिंग व्हाइट कलर की हेंगी जहां पर काफी दरवाजे लगे हुए है।